लोगों के हाथ में मशाल भी जल रही है।

लाइटिंग की दुकान है यहां पर बहोत सारी--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

मोहर्रत के उससे आय हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में कुछ गमले भी रखे हुए हैं।

इस चित्र में एक महिला भी दिखाई दे रही है।

उस आदमी ने ग्रे कलर की टी-शर्ट पहनी है। आदमी के नीचे जो कारपेट है वह पिंक कलर की है।

यह ढाबे के ऊपर एक टावर बना हुआ--